यहाँ पर एक काले रंग का टेबल है टेबल पर सफ़ेद काले रंग के गुब्बारे हैं।

टेबल के ऊपर बॉटल रखी हुई है और झाड़ भी है।

और इधर एक कुर्सी है जिस पर दो आदमी लोग--

एक लाल रंग के अलमारी में रखे हुए हैं।

और इधर एक टेंट भी है जिसके नीचे आदमी लोग खड़े हुए हैं।

लाइट का एक खम्बा भी दिख रहा है और आसमान भी है।

और बड़े से पेड़ भी है इधर तीन आदमी लोग दिख रहे है और बहार बहुत --

और इधर व्यायाम करने के लिए भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ है उसपे बहुत सारे झाड़ियाँ हैं।

और इधर एक सफ़ेद रंग का घर भी दिख रहा है और इधर छोटे छोटे झाड़ियाँ भी है।

गेट के अंदर एक आदमी गाड़ी के ऊपर बैठ के जा रहा है जिसने लाल रंग का शर्ट पहना है।

और उसके ऊपर एक टंकी भी दिख रही है बंगले के ऊपर एक लड़का--

जिसने वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है नीचे छोटे छोटे झाड़ियाँ भी दिख रही हैं।

जिसने ब्लैक कलर का शर्ट और सफ़ेद कलर की टोपी पहनी हुई है।

यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं एक लड़का पत्थर के सामने--

और एक बच्चा उसने भी नीले रंग का शर्ट पहना हुआ है और एक लड़की है जिसने ब्लू रंग--

उधर डोर लगाया हुआ है जो नीले रंग का है.

यहाँ पर एक दुकान है दुकान के बहार बहुत सारे कुर्सियां रखी हुई हैं।

यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसने लाल रंग का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पेहनी हुई हैं।

यहाँ एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर नीला बोर्ड लगा हुआ है और इधर लिखा हुआ है।

इधर बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं और एक नीला शर्ट पहन के आदमी भी गाड़ी में चढ़ रहा है.

लाइट भी दिखाई दे रही है सभी तरफ अँधेरा छाया हुआ है।

पानी के अंदर भी एक छोटा सा पेड़ है।

यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दिख रहे है और कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने --

पीले रंग का शर्ट और काली कलर की पैन्ट पहनी हुई है ये छोटे छोटे बच्चो ने लाल--

यहाँ पर एक नीले रंग का बोर्ड दिख रहा है उसके ऊपर कनाडा बैंक ए_टी_एम ऐसा लिखा हुआ है।

चॉकलेटी है और इधर कांच का दरवाजा भी है।

और इधर अलमारियाँ हैं अलमारियों मे गौगल रखी हुई है।

जिसके गर्दन है और वो मिट्टी पर बैठा हुआ है आजु-बाजु में बड़ी बड़ी--

पेड़ भी है और एक खम्बा भी है और बाजु में एक घर है जिसका रंग सफ़ेद है।

यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जिसने सफ़ेद रंग का शर्ट और काले रंग की पैन्ट पहनी हुई है।

उसकी दीवारों का रंग है नीला और इधर एक बास्केट भी रखा हुआ है।

यहाँ पर एक रुम है रुम के अंदर बहुत सारा सामान लगाया गया है.

यहाँ पर दिवार है दीवारों का रंग पीला है और यहाँ पर एक दरवाजा है दरवाज़े का रंग--

ताला है यहाँ पर बटन का बोर्ड है कोने मे--

यहाँ पर गुलाब के फूल बिक रहे हैं जिनका रंग लाल है और उसका हरे हरे पत्तियाँ भी बिक रही हैं।

यहां पर दो तोते हुए है जिनका रंग पीला नीला हैं --

और इनके पीछे बड़े बड़े झाड़े है--

इन तोतों को पिंजरे के अंदर बंद किया गया है।

यहाँ पर एक नीला रंग का बोर्ड लगाया गया है उसके ऊपर लिखा गया है।

वो फ़्लोर पर एक गाड़ी जा रही है जिसके कारण ताला है।

और इधर छोटी गाड़ी खड़ी है जिसका रंग लाल है।

इस इमेज मे दो लड़के हैं जिन्होंने नीले रंग का शर्ट और काली रंग की पैंट पहनी हुई हैं--

और उनके ऊपर गुब्बारे हैं जिनका रंग पर्पल और ऑरेंज है दीवार का रंग--

नीचे बहुत सारे आदमी एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।